और इस स्टेज के पीछे में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है और इस बोर्ड में लिखा हुआ --

यह एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर स्विमिंग पूल के बीच में एक फुहारी निकलने वाला --

यहाँ पर एक भवन दिख रहा है जो बहुत बड़ा लग रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल --

यहाँ पर बिस्किट भी दिखाई दे रहे हैं और जैम भी दिख रहे हैं और यहाँ पर--